एक मार्केट है जिसमे बहुत सारे बकेट के ऊपर एक टेबल लगा कर बहुत सारी मछलियों को बेचा जा रहा है एक औरत खड़ी है जिसने येलो रंग का सूट पहना है वो अपने पर्स मे से पैसे निकाल रही है कुछ आदमी इस मच्छलियों को बेंच रहे हैं।

ये रंग-बिरंगे कलरो मे है जैसे की लाल नीला हरा गुलाबी--

ये एक दूकान है जिसपे बहुत सारे रंग बिरंगे फुल रखे गए है जिसमे से कुछ पीले कुछ लाल कुछ सफेद और बहुत सारे हरी पत्तियां भी पड़ी हुई है। >